रोड के उस तरफ भी बहोत सारी कार दिखाई दे रहीं हैं जिसके सामने एक बिल्डिंग भी है।

इसका एक दीवाल हरे रंग का हैं और उसका दूसरा दीवाल सफेद रंग का हैं।

इस होटल के बाहर रेलवे ट्रैक भी दिखाई दे रहा है जहां दो ट्रेन खड़ी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम डिलीशियस केक एंड बेकरी है।

यहां पर कांच और लकड़ी से उसका दरवाजा बना गया है।

इसमें दो कांच की खिड़कियां तीन मशीन और एक बड़ा सा प्लेटफार्म दिखाए गया है इसका रंग सफेद है।

यह एक बेकरी स्टोर का चित्र दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर हमें एक डि मार्ट का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिसके आजू बाजू बहोत से छोटे बिल्डिंग ये भी हैं।

यह फोटो में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक ट्यूशन क्लासेस का दिखाई दे रहा है।

जिसमें सभी कुकर प्रेस्टीज ब्रांड के हैं।

यहां छे लाइट एक टी_वी और छे टेबल भी रखे हुए हैं।

यहां एक ए_सी भी लगा हुआ है एक काउंटर जिसका रंग ब्राउन है।

इस फोटो में एक मंदिर का इलाका दिखाया गया है।

इस फोटो में चार कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

इसके बाजू में त्रिपाल से एक मंडप भी बना हुआ है।

इसके सामने एक बिल बोर्ड लगा है जिस पे एस्ट्रल पाइप लिखा हुआ है।

यहां एक आदमी स्कूटी पे दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी पीला कलर का शर्ट पहन के चलता हुआ नजर आ रहा है।

यहां अनेक प्रकार के कांच के बोटल रखे हुए हैं।

इस टेबल पे एक कैलकुलेटर भी रखा हुआ है।

जिस रिप्सशन का दरवाजा कांच और लकड़ी का बना हुआ है।

इस रिसेप्शन में तीन गमले भी रखे हुए है।

यहां दो पंखे लगे हुए हैं इसके सामने एक गार्डन भी है।

यहां पे अनेक कुर्सियां और टेबल हु लगे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस इमारत के दाएं बाजू बहोत सारे पीले रंग के बस भी खड़े हुए है।

यहाँ ब्लैक कलर कि रेलिंग भी लगी हुई हैं।

इस फोटो के अंदर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां बहोत से आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां का दरवाजा कांच का है जिसके बाहर एक सफेद रंग की स्कूटी भी खड़ी हुई है।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

इस फोटो के अंदर एक स्टेनलेस स्टील का शेल्फ दिखाया गया है।

यहां एक स्टैचू है जो छोटा भीम का स्टैचू है।

इस फोटो के अंदर एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

इस मैदान में बहुत से पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।